बहोत ही खुबसूरत-सा मेडिसिन का शॉप दिखाई दे रहा है यहाँ पर सी.के. वर्कशॉप में बहोत सारे मेडिसिन बहोत सारे पाउडर बहोत सारे दवाईया रखे गए है यहाँ बाहर में एक आदमी खड़ा है।

बहुत सारी ऑफिस में अलग-अलग ए तरह के केबिन बनाए गए है पंखे भी दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है वॉच भी दिखाई दे रही है यहाँ की दीवार की कलर येलो है बड़े-बड़े खिड़कियाँ और पर्दे भी दिखाई दे रही है।